बच्चे यहां फंक्शन कर रहे हैं हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता बने हुए हैं।

ये तो कोई कैफ़े नजर आ रहा है।